पर एक आदमी एक्सेरसाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी सारी मशीनें भी रखी हुई दिखाई दे रही --

सामने कुछ बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आसमान छाया हुआ है।

इस में कुछ लोग खड़े है और पास में कुछ टू व्हीलर भी खड़ी हुई है।

तरबूज बास्केट में रखे हुए है और तरबूज हरे -हरे और बड़े -बड़े है ऊपर कुछ पौधे लटके हुए है।

और इसमें एक टायर भी नहीं लगा दिखाई दे रहा पीछे का दरवाजा खुला हुआ है।

यहाँ देखने में एक शिव मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है मंदिर के अंदर नंदी भगवान विराजमान दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बैंक की तस्वीर दिखाई दे रही है ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है कनारा बैंक बोर्ड का कलर नीला है।

सामने सीढ़िया बनी हुई दिखाई दे रही है और अंदर दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की भी दिखाई दे रही है।

बीच में मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके आस पास --

थोड़े से झाड़ लगे हुए है मंदिर के ऊपर शिखर पे एक झंडा लगा हुआ है मंदिर का--